आस पास में जंगल भी दिखाई दे रहे--

ऊपर सीलिंग में बहुत सारा वेंटीलेटर्स भी दिखाई दे रहे हैं।

गेट के सामने एक वॉचमैन भी चेयर में बैठ के दिखाई दे रहा है।

सामने में दो आदमी भी चल के दिखाई दे रहा है।

और प्लास्टिक में एक स्टूल भी दिखाई दे रहा है स्टूल के सामने में एक फोन और--

पावर बैंक भी दिखाई दे रहा है।

दृश्य में एक बड़ा सा आईना दिखाई दे रहा है आईना के अंदर दो इंसान दिखाई दे रहा है।

पीछे लोग भी दिखाई दे रहा है। दुकान के बाहर में चप्पल भी रखे दिखाई दे रहा --

पीछे में बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ जंगल भी दिखाई दे रहा है।

वॉल में बहोत सारा मोमेंट्स भी दिखाई दे रहा है। वॉल में स्विच भी दिखाई दे रहा --

पार्क में बहुत सारा बच्चा लोग खेलते हुवे दिखाई दे रहा है।

टेबल के ऊपर में एक बॉटल भी दिखाई दे रहा है।

नारियल पेड़ के सामने में लेकिन वाइट वायर भी दिखाई दे रहा।

बहुत सारा बंगला मास्क भी दिखाई मील रहा है प्याज और टमाटर भी दिखाई मील रहा है।

उनके ऊपर में एक पानी बोटल भी दिखाई मिल रहा है।

पिक्चर में पानी दिखाई दे रहा है। पानी के ऊपर एक ब्रिज भी दिखाई मिल रहा है।

पिक्चर में नीलम अपार्टमेंट बिल्डिंग दिखाइ दे रहे हैं।

में म्यूजिक स्टूडियो रूम दिखाइ मिल रहा--

उधर में एक गिटार भी दिखाई दे रहा है।

बाहर में बहोत सारा गाड़ी और बाइक भी रखे दिखाई दे रहा है।

सामने बहुत सारे इंसान लोग चलकर भी दिखाई दे रहे--

पिक्चर में दुकान के अंदर दिखाई दे रहे हैं।

वाल में नंबर का साथ एक पेपर भी चपका के दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर में बहुत सारा कलर का डिब्बा दिखाई दे रहा है।

बहु सारा कार्टन बॉक्स भी दिखाई दे रहा है और प्लास्टिक पाइप भी दिखाई मिल रहा है।

पीछे में हार्डवेयर का शॉप दिखाई दे रहा है। दुकान के अन्दर एक रेड कलर का चेयर भी दिखाई दे रहा हैं।

दुकान के अंदर में एक इंसान भी दिखाई मिल रहा है।

दुकान में बहुत सारा जाली भी दिखाई दे रहा है।

रस्ता में इंसान लोग भी चल के दिखाई दे रहा है।

जिनमें रेस्टोरेंट के अंदर दिखाई दे रहे हैं।

एक बिल्डिंग्स के ऊपर में एडवर्टाइजमेंट बैनर भी दिखाई मिल रहा है।

सामने में विंडो भी दिखाई दे रहा है।

अंदर में फूल भी दिखाई दे रहा है।

अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं बहुत सारा वर्कर्स लोग भी दिखाई मिल रहा है।

सामने में एक रेड कलर का एक चप्पल भी दिखाई दे रहा है।

और ब्लेजर भी दिखाई दे रहा है अंदर में मिरर भी दिखाई मिल रहा है।

दुकान के ऊपर में एयरटेल फॉर जी और वोडाफोन लिख के दिखाई दे रहे हैं।

उसी में पत्ता बांध के रखा हुआ है।

पीछे में एक का घास भी दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर में एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

दरवाजे के सामने एक इंसान हेलमेट पकड़ के दिखाई मिल रहा है।